उधर गुलदस्ते सजाये हुए है। पेड़-पौधे सजाये हुए हैं।

रेड रेड टी शर्ट में दाढ़ी बढ़ाए हुए बंदा खड़ा है।

और उसके साइड में भी दो छोटे छोटे बनाए गए हैं सुंदरता के लिए--

साइड में दो बेड बेड जैसे दिख रहा है मशीन होंगे।

यहां पे घर का काम चल रहा है बिल्डिंग मैटेरियल के समान में जैसे बालू हुआ--

दिखाया गया है कि ऐसे ही है एक पिल पिल्ले टी शर्ट में और लूंगी में--

और ये बोरे में कुछ फूल पत्तियां भी लटकी हुई हैं और एक माला पहनाया गया है दुकान--

ये मुस्लिम लोग तजिया बनाते हैं काफी अच्छा है कलरफुल तजिया है।

ये सर्विस सेंटर है बाइक वगैरह खड़ी है यहां पे साम--

और काफी खाने में टेस्टी लगता है पिज्जा सबको पसंद है।

और काफी भीड़ इकठ्ठा है यहां पे--

बहोत बड़ा बड़ा दो झूमर दिखाई दे रहा है।

बंदे भी हैं बंदा भी है एक काफी सारा गुलदस्ता लगा हुआ है लाइटें लगी--

और दूर बिल्डिंगे दिख रही हैं।

बिल्डिंग के किनारे बिल्डिंग के साइड में भी पेड़ पौधे हैं किनारे--

देखने में अच्छा लग रहा है काउंटर के अंदर जो भी हो सामान --

यहां कार रिपेयर किया जा रहा है कार का--

सफेद ड्रेस में भी कुछ लेडिजे खड़ी है। साल ओढ़े हुए--

ये रोड है रोड के किनारे पेड़ पौधे हैं एक साइड में बाउंड्री लगी हुई है।